यह तस्वीर एक हवाई जहाज के --

और बादल भी नजर आ रहे हैं सामने घास भी है।

इस तस्वीर में कोई व्यक्ति पा पत्थरों के बीच में है वह अपने हाथ से एक पत्थर को छुए हुए है।

थोड़ी सी रोशनी पड़ रही है उसके चेहरे पर आसपास बहुत सारे बड़े छोटे पत्थर है।

आस-पास पेड़ दिख रहे हैं थोड़ी घास नजर आ रही है।

यह तस्वीर पानी के स्रोत के पास का नजारा है पीछे पहाड़ है सामने कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हुए है।

खुला साफ आसमान है और नदी बहती हुई दिख रही है।

सामने एक सड़क नजर आ रही है जिस पर हल्का पानी गिरा हुआ है और दुकान पर पंद्रह प्रतिशद की छूट भी है।

कई सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं पोडियम के पास एक व्यक्ति खड़ा है।

यह एक बड़ी बिल्डिंग तथा साथ में एक बड़ा खेल का मैदान नजर आ रहा है तस्वीर में।

काले रंग का एक पेड़ और कुछ आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में कई सारे बच्चे योगा करने की कोशिश कर रहे हैं करीब छह बच्चे उष्टा आसान में है।

पंखे हैं बिजली है ए_सी है।

मंदिर बने हुए हैं लकड़ी के अलग-अलग --

ऊपर लाइट जल रही है पीछे दीवार भी है।

छोटे-बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है।

और कुछ बिजली के स्रोत भी नजर आ रहे है।

पेट्रोल पंप है जहाँ पर कुछ मोटर बाइक सवार व्यक्ति तेल खरीद रहे है।

सामने पत्थर का रास्ता बना हुआ है पीछे आसमान भी है।

यह तस्वीर एक सड़क की है जहाँ एक बड़ा ऊंचा भवन है जिसके प्रथम तल पर कैनरा बैंक नजर आ रहा है।

पीछे और भी भवन है कई सारे लोग हैं जो अपने-अपने वाहनों पर सवार हैं और आगे पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे है।

यह तस्वीर में कई सारे गाड़ियाँ लगी हुई है।

और कुछ मोटरसाइकिल भी लगी हुई हैं कुछ गाड़ियाँ लाल सफेद तथा नीले रंग की है।

रखी हुई है बीच में सलाद रखा हुआ है और चटनी रखी हुई है।

यह थाल एक टेबल के ऊपर रखी गई है और यह बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा है।

यह तस्वीर में जल का एक स्रोत है जिसमें एक नाव है नाव पर दो लोग हैं जो नाव को खे रहे है।

खूब सारे पेड़ नजर आ रहे हैं तथा खुला आसमान भी दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी दुकान के बाहर से अंदर जाने का रास्ता नजर आ रहा--

कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं कुछ लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं दरवाजे और शीशे के बने हुए हैं।

तथा सीढ़ी जो है वो पतली-पतली है।

जाल के अंदर बंद है।

चलने हेतु रास्ता बना हुआ है बड़े हरे भरे पौधे लगे हुए है।

एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है साथ ही एक व्यक्ति जो चल रहा है।

सामने मैदान तो है परंतु उसमें घास नहीं है पर कई सारे लोग हैं कुछ पैदल तथा कुछ साइकिल से जा रहे है।

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट के रिसेप्शन का प्रतीत हो रहा है यहाँ पर--

ऊपर सजावट की हुई है सामने में जमीन दिख रहा है जो कि चेस के बोर्ड के जैसा नजर आ रहा है।

यह तस्वीर किसी विवाह स्थल का प्रतीत हो रहा है जहाँ बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है पीछे एक भवन है जो की--

ये बड़ी-बड़ी तस्वीरें बनी हुई टंगी हुई है।

यह इस रेस्टोरेंट में प्रवेश का द्वार प्रतीत हो रहा है।

अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं एक व्यक्ति झुककर किताब निकालने की कोशिश कर रहा है।

यह एक मोबाइल दुकान का तस्वीर प्रतीत हो रही है।

पहाड़ हैं जो हरे-हरे पेड़ों से भरे हुए है।

एक हेलमेट रखा हुआ है कई सारे प्लेट रखी हुई हैं और एक ड्रम भी रखा हुआ है।

यह तस्वीर एक जिम की है जिसमें कई सारे जिम के सामान रखे हुए है।

यह तस्वीर किसी नृत्य शिक्षा की प्रतीत हो रही है जहाँ एक शिक्षिका हैं जो कुछ बच्चों को नृत्य सिखा रही है।

एक शीशा है जिसमें उनके प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति इनकी तस्वीर ले रहा है।